मुझे इस इमेज में कुछ मजदूर दिख--

कुछ मशीन रखी हुई दिख--

दो ए_टी_एम दिखाई दे रहे हैं।

फैन दिखाई दे रहा है।

मुझे इस इमेज में कार दिखाई दे रही है।

काली और दूसरी का रंग सफेद दिख रहा है।

फैन लगा हुआ दिख रहा है।

साइकिल दिखाई दे रही है।

लाइट जलती हुई दिख रही है।

मुझे इस इमेज में एक शॉप दिखाई दे रही है।

मुझे इस इमेज में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

और इंडियन ऑयल आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा दिख रहा है।

हरी घास दिखाई दे रही है।

दिख रही है आसन बिछा हुआ--

मुझे इस इमेज में सड़क दिखाई दे रही हैं।